कप नजर आ रहा तार नजर आ रहे है खिड़कियाँ नजर आ रही है।

इस इमेज में मुझे मंदिर नजर आ रहा है मंदिर बहोत बड़ा नजर आ रहा--

इधर चबूतरे बने हुए हैं स्टील के घेरे किए हुए हैं।

लाइटे झल रही है ब्लू कलर के गेट लगे हुए है चेयर्स लगे हुए है टेबुल लगे हुए है चेयर्स रेड कलर की--

और घर नजर आ रहे हैं व्हाइट कलर का नजर आ रहा हैं सामान नजर आ रहा है पार्टी नजर आ रहा हैं।

इस इमेज में मुझे जो एक जगह दिखाई दे रहा है जो बहोत बड़ा खाली है सामने में एक फोटो लगा हुआ है नजर आ रहा है नजर आ रही है।

तो कुछ लोग नजर आ रहे हैं कुछ लोग खड़े हैं कुछ लोग बाइक के ऊपर बैठे हैं परछाई नजर आ रहा है टीना नजर आ रहा है स्टैंड नजर--

बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं बैट नजर आ रहा हैं बॉल नजर आ रहा है।

मस्जिद में जो मुझे एक महिला दिखाया गया मस्जिद के बाहर बहुत सारे गेट लगे हुए हैं बहुत दिवाल बने हुए हैं दिवाल को ग्रीन और व्हाइट --

इसमें मुझे एक पेट्रोल पम्प दिखाई दे रहा जो बहुत बड़ा है पेट्रोल पम्प के उपर लगे हुए है पेड़ नजर आ रहे है।

इसमें मुझे नन्दी दिखाई दे रहा जो सब्जी क्या है बहोत सारी सब्जी बेचने वाले दिखाई दे रहा है कुछ लोग आखबार लिए हुआ है।

अफ हमको भी दिखाई दे रहा बहोत दिखाई दे रहा है हरे हरे सब्जी नजर आ रही है पाइप दिखाई दे रहा --

बड़ा सा छाता दिखाई दे रहा है जो बहोत ही रंग बिरंगे और ब्लू ब्लू प्लास्टिक नजर आ रहा बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे--

स्कूटी नजर आ रहा है बाइक नजर आ रहा है आदमी नजर आ रहा है।

इस इमेज में मुझे एक घर नजर आ रहा है जिसका छत मतलब नजर आ रहा है सामने में एक शीशा नजर आ रहा है टेबल नजर आ रहा है जो बहुत दूर रखा हुआ --

बड़े साइज का बॉक्स नजर आ रही है एक चेयर नजर आ रहा एक चेयर --

इसमें मुझे घर नजर आ रहा है घर के इन्वेस्टर नजर आ रहे है जो वाईट कलर के है कुछ सीमेंट के खम्बे नजर आ रहे है कुछ रोड्स नजर आ रहे है।

इस इमेज में मुझे जगह दिखाई दे रहा जहां सामने में एक बस लगा हुआ बस के वाइट में लगा हुआ बस में बहुत सारे--

सामने में मुझे एक डब्बा नजर आ रहा है कचरा नजर आ रहा है दीवार नजर आ रहा है बाइके नजर आ रही है कुछ लोग नजर आ रही है घर नजर आ रहा--

उसी में जो मुझे एक जगह नजर आ रहा कुछ प्रोग्राम हो रहा था सझाया गया है।

इस इमेज में से जो मुझे लोकेशन दिखाई दे रहा है --

ब्लैक कलर प्लेन दिखाई दे रहा है वाईट कलर का कुछ एंगल्स दिख रहे है कुछ तार दिख रहे है हरे हरे घास दिख रहे है --

बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है खम्बे दिख रहे एक आदमी दिख रहा है --

बहोत सारे लोग नजर आ रहे है लाइटे नजर आ रही है सोना दिखाई दे रहा है।

छोटा हाथ नजर आ रहा है और वाईट कलर का नजर आ रहा है कुछ डिब्बे नजर आ रहे कुछ फ्रेंड नजर आ रहे ग्रीन कलर का फोटो --

इसी में मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमे दर्पी नेम लिखा हुआ है यह फ्रफ्युम का फोटो दिखाई दे रहा हे सामने में मुझे एक बहुत बड़ा --

लाइटे दिखाई दे रही है एक टेबल नजर आ रहा है एक चेयर्स नजर आ रहा है शिशा नजर आ रहा है।

यहाँ बच्चियाँ नजर आ रही है जिनके माते में फुल लगे हुए है जंगल में--

नजर आ रहा है नारियल का पेड़ नजर आ रहा है जमीन नजर आ रहा है घासे नजर आ रही है सीके नजर आ रही है।

घास नजर आ रही है पानी के पाइप नजर आ रहे है सीढ़िया नजर आ रही है।

मुझे एक जगह नजर आ रही है जहाँ बहोत सारे फुल लगे हुए है फुल बने हुए है फिर बेच रहे है कुछ लोग नजर आ रहे है फुल बेचते हुए कुछ लोग चल रहे है।

दुकान दिखाई दे रहा है। दुकान में बहोत सारे सामाने रखे हुए है। नजर आ रहा किताबे नजर आ रही है।

यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहे है।

इसमें भी मुझे एक लम्बी सी सड़क नजर आ रही है बहुत सारा भीड़ भाड का इलाका नजर आ रहा घर नजर आ रहे दुकाने नजर आ रही--

पुल नजर आ रहा है एक स्कूटी नजर आ रहा है एक बाइक नजर आ रहा है।

इस इमेज में से मुझे एक दुकान नजर आ रहा है जो की पूजा के सामान --

एक और लाल ओरेंज ब्लैक कलर से बने हुए दो गिफ्ट नजर आ रहे है।

इसी में मुझे एक रूम नजर आ रहा है रूम के अंदर--

लड़का कुछ अलग कपड़े पहने हुए नजर आ रहे है चियर्स नजर आ रही है निचे टेबल नजर आ रहे है फैन नजर आ रहे है।

पेड़ नजर आ रहे है फ़ोन चला रहे है एक लेपटोप नजर आ रहा है सड़क नजर आ रहा है बाइके आ रही है सब मैदान नजर आ रहा है।

लम्बी सी सडक नज़र आ रही हैं सड़क पूरा कच्ची नजर आ रही है पूरी मुठी नज़र आ रहा हैं मुठी--

इसी में रंजक दुकान के अंदर कसिम चेहरा आ रहा है जिसमे में--

मुझे खा गया है पेड़ पर पुरे--

एल लम्बा शर्ट नजर आ रहा है।

एक पेड़ लगाया हुआ है छोटे छोटे पोधे लगे हुए हैं --

उसी में मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा हे मंदिर में भगवान चदा रहा मंदिर--

यहाँ बहोत सारे सझाये गए है काले नजर आ रहे है निचे फर्स नजर आ रहा है।

इस इमेज में मुझे एक घर दिखाई दे रहा हे इटे नजर आ रही है यहाँ बहोत सारे लोग नजर आ रहे है।

फर्स नजर आ रहा है बाल्टी नजर आ रहा है।

इस इमेज में मुझे जो बैंक दिखाई दे रहा जो पंजाब नेशनल बैंक है बहोत लम्बा सा पोस्टर नजर आ रहा है बिल्डिंग बहुत बड़ा नजर आ रहा है खिड़की भी नजर आ रहा है और ब्लैक कलर के नजर आ रहे है।

फुल नजर आ रहे है फोटो नजर आ रहे है स्कूटी नजर आ रहे है वाईट कलर का ब्लैक कलर पाइप नजर आ रहा है रेड कलर का बाइक नजर आ रहा--